फुट पाथ दिखाई पड़ रहा हैं जो की ग्रे कलर में दिख रहा हैं साइड में खंभे लगे हुए हैं जो की ग्रे कलर और ब्लैक कलर में दिख रहा हैं सामने कुछ बाल्टियाँ रखी हुई हैं जो की ग्रे कलर में दिखाई पड रहीं हैं सामने कुछ लाइटिंग भी लगी हुई हैं रेलिंग लगी हैंजो की सिल्वर कलर में दिखाई पड़ रही हैं।

कुछ बच्चे लाइन में खड़े हुयी हैं सामने एक झंडे लगा हुआ हैं जो की वाइट कलर के डंडे पर लगा सामने एक बिल्डिंग दिख रही हैं वहाँ पे खिड़कियाँ दिखाई पड़ रही हैं जिन पे शीशे लगे हुए हैं।

पीछे एक दीवाल जैसा दिख रहा हैं वहाँ पर खिड़कि दिखाई पर रही हैं और जो की ग्रे कलर में हैं साइड में कुछ पेड़ दिख रहे हैं जो ग्रीन कलर में दिखाई पर रहे हैं पीछे दिवार पर काई जैसा लगा हुआ हुआ हैं।

पीछे बहुत सारा पानी भी दिखाई पर रहा हैं और कुछ पेड़ दिख रहे हैं की जो ग्रीन कलर ब्लैक कलर में दिख रहे हैं पीछे आसमान का कलर ग्रे कलर और पर्पल कलर में दिखाई पड़ रहा हैं।